एक नाव में पूरा पैसेंजर भरके रखा हुआ है।

यहाँ पे एक दुकान में रैक में बहुत सारे वगैरह काफी मान बना--

यहाँ पे हारमोनियम सिंथेसाइजर भी दिखता है यहाँ पे ढोली तबला भी रखा हुआ हैं।

पिंस वगेरा ये सब रखा हुआ हैं।

ये एक शॉप है यहां पे टॉय छोटा छोटा टॉय मिलता है ये एक टो--

पीछे गार्डवाल के उस तरह बड़ा बड़ा पेड़--

के पास में और एक दुकान है उसके डब्लू कर के लिखा हुआ है वो अभी ओपन है उसका गेट का काँच का हैं।

बिल्डिंग का घाट वॉल के बाहर एक मार्ट है।